यहाँ पे एक अजीब सा स्विमिंग पुल जैसे दिखाई दे रहा है।

लोहा है वो वाईट कलर का पेंट किया हुआ है निचे में जो है वो ग्रीन कलर का --

घर जैसे पीछे में कुछ पेड़-पौधे भी छोटे-बड़े दिखाई दे रहे हैं यहां पे और यहां पे गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है यहाँ --

रोड पे बहुत सारी बाइक बहुत सारी ऑटो दिखाई दे रही है ऑटो ऑटो शॉर्ट शॉर्ट दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ --

अं रेड कलर का कपड़ा पेहने हैं और ऊ कैप लगाए हैं।

आगे आसमान भी दिखाई दे रहा है और उधर लास्ट में एक घर भी शायद दिखाई --